दीवारों पर कुछ स्लोगन लिखे हुए दिखाई दे रहे हैं।

इस फोटो में एक आदमी दिखाई दे रहा है।

फोटो में एख गाय दिखाई दे रही है।

ऊपर कुछ लाल रंग के बोर्ड लगे हुए दिखाई दे रहे हैं।

इस फोटो में डाइनिंग टेबल दिखाया गया है।

इसमें लोहे की चद्दर से बनी हुई छाया दिखाई दे रही है।

इस फोटो में एक चाय की दुकान दिख रही है।